और एक स्टार टंगा हुआ है बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

इस चित्र में बहोत बड़ा गार्डन है जिसमें चार पांच लोग पोस्टर को हाथ में पकड़े हुए खड़े हैं।

लाइटें भी लगी हुई हैं नीचे हरे हरे घास जैसे बिछाए गए हैं टेबुलों में गिलास रखी गई है।

और बड़े बड़े चारों तरफ पेड़े लगे हुए हैं और हरे हरे घास छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।

और एक फुव्वारा सा एक पानी के जरिए जा रहे है और एक लड़का चबूतरा में बैठा है नीचे पूरे हरे-हरे घास --

और बहुत सारे बाइका भी खड़ी से।

यह चित्र मा एक बहोत बड़े केनरा बैंक हरे ।